बैठा हुआ है। एक लिबास खड़ा हुआ है। एक लिबास का रंग काला पीला नीला सफेद सबसे --

इस तस्वीर में दिखाया गया है कि एक आदमी और एक औरत जो है वो सामने खड़े हैं एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं औरत अपने बैग को देख रही है बैग उसका नीचे पड़ा हुआ है।

बहोत ही ज्यादा का जो रंग है वो है--

कोई देख नहीं है बच्चे अपना काम कर रहे हैं लिखाई में मसरूफ है बच्चे और बच्चे जो है ना वो बेंचों पर जमात में बैठे हैं।